एक मकान भी बना हुआ है।

यहाँ मुझे पोस्टर बड़ौदा एक्सप्रेस ट्वेन्टी इनटू सेवेन बड़ौदा लिखा हुआ है।

बिल्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है।

इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है।

सामने भी मेन दरवाजा लगा हुआ है।